कुछ मेरे को लोहे का खंभा भी दिखाई दे रहा है।

कुछ मेरे को पर्दा भी दिखाई दे रहे हैं कुछ मेरे को कुर्सी भी दिखाई दे रही हैं।

मेरे को श्रमुधि दिखाई दे रहा है। कुछ मेरे को पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ मेरे को मकान बिल्डिंग भी दिखाई दे रही हैं कुछ मेरे को--

कुछ मेरे को बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। कुछ बच्चे झंडा भी लिए हैं।

कुछ मेरे को किताब भी दिखाई दे रही है। कुछ मेरे को बैठे हुए इंसान दिखाई दे रहा है।

कुछ मेरे को डी_पी दिखाइ दे रही है कुछ मेरे को बिल्डिंग भी दिखाइ दे रहे है।

कुछ मेरे को दुकान में एक इंसान खड़े हुए दिखाई दे रहें हैं।

कुछ मेरे को ए_सी दिखाई दे रही है कुछ मेरे को फुग्गा भी दिखाई दे रहें हैं।

कुछ मेरे को लोहे की वॉच के कांच दिखाई दे रहें--

कुछ मेरे को लोहे के गेट जैसे लगे हुए दिख रहे है।